कैप लगाए काम कर रहे हैं बड़ी जालियां और बल्ब दिख रहे हैं।

यहाँ बड़ा-सा मैदान दिख रहा है जिसमें चट्टानें दिख रही है।

रखा हुआ है नीचे तीन चार पराठे दिख रहै हैं पराठे में --

दूर पर वाइट बिल्डिंग और ब्लू बस भी दिख रही है।

यहाँ बड़ा-सा समुन्दर दिख रहा है जिसमें बीच में पूल भी दिख रहा है आसपास--

--बनी हुई है जिसका दरवाजा ब्लैक कलर के शटर का है गेट पर कानन पंडारी का --

यहाँ बड़ी सी दुकाने दिख रही है हर दुकानों पर फूलों की लड़ी टंगी हुई है।

बिजली के तार दिख रहे है बल्ब टंगे हुए है।

इंग्लिश बोर्ड लगा हुआ है एक मकान बन रहा है जिसमें एक अंकल थैली ले जाते हुए दिख रहे हैं।

रेड व्हाइट बड़े बेलून भी लगे हुए जैसे टेबल --

थैली में फुलकियाँ रखी हुई है ।

दो-चार टेंट और झण्डे भी लगे हुए हैं गाड़ियां भी लगी हुई है बड़े बल्ब भी दिख रहे हैं।

रेड कलर का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जाली और व्हाइट कलर का मकान बना हुआ है।

उसमें पिंक कलर का बोर्ड बना हुआ हैं बड़े पेड़ आसपास दिख रहा हैं।

यहाँ बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग खड़े हुए है सर्विस शेयर पार्क एक्सेसरीज बड़ा-सा--

यहाँ बड़ा-सा हॉल दिख रहा है एक बीच में पुराने जमाने की गाड़ी--